और यहां पर एक टेबल भी दिखाई दे रहा है जोकि ब्लैक कलर का है--

और कुछ भाई साहब लोग यहां पर बुक खरीदने आए हुए और एक वैसा के आदमी छोटे जैसा बच्चा भी दिखाई दे रहा--

जो की अनगिनत दिखाई दे रही है कुर्सियां भी टंकिया भी दिखाई दे रही है।

और सेव तो अभी कच्चे देखने को लग रहा है और इन सेवो के ऊपर जालियां भी बिछाकर रखी हुई है ताकि पक्षियां इन सेवो कों खा खा ना सके--

और नीचे फ्लोर में टाइल्स भी लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक घर दिख रहा है जहां पर बहोत बर्फ पर पड़ा हुआ है।